जे एक रेस्टोरेंट है और कुर्सियाँ रखीं हैं।

दो बोर्ड लगे हैं। एक बोर्ड का रंग लाल है और एक बोर्ड का रंग काला है।

नीली पीली सफ़ेद गुलाबी बेगनी रंगों की --

और एक अ ललका फोल की टोकरी को पकड़े हुए हैं।